और इसमें एक आदमी भी नजर आ रहा है।

और इसमें पेड़ भी खड़े हुए हैं और इसमें मकान भी दिखाई पड़ रहे हैं।

और इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई पड़ रहे हैं।

और वह एक मेज पर हाथ धरे बैठी है।

और इस पर बाहर की साइड कुछ डिजाइनिंग भी की गई है।

इसमें सभी के चेहरे को ब्लर किया हुआ है।

इस फोटो में कृष्णा ऑटोमोबाइल का एक पोस्टर लगा हुआ है।

इसमें कुछ तार भी नजर आ रहे हैं और इसमें कुछ ग्रिल भी नजर आ रही हैं।

इसके सामने एक टेंट भी लगा हुआ है।

और इसमें और भी मकान नजर आ रहे हैं।

इसमें पानी में थोड़ी लहरें भी आया रही हैं।

इस फोटो में कुछ व्यक्ति लेंटर गेरते हुए नजर आ रहे हैं।

और कुछ आदमियों ने सर पर मंडासा बांध रखा है।

और इसमें हल्के हल्के बादल भी नजर आ रहे हैं।

और इस पर जो बड़े बड़े पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

इसमें एक आदमी इधर बाहर की साइड आ रहा है।

और इसमें बहोत ही गुलाबी गुलाबी पट्टियां भी लगी हुई हैं और--

और उसके नीचे एक दांत का पोस्टर भी टंगा हुआ है।

यह एक दुकान का फोटो नजर आ रहा है।

और दो व्यक्तियों ने अपने कंधे पर बैग टांग रखा है।

जो बंद पड़ी है और इसकी छत पर कुछ--

लड़का भी नजर आ रहा है और इसमें पीछे मकान भी नजर आ रहे हैं।

इसमें कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और उनके चेहरे को बलर किया हुआ है।

और इसमें बड़ी बड़ी लक्कड़ भी नजर आ रहे हैं जिन पर व्हाइट व्हाइट कुछ घेरा हुआ है।

उसने चप्पल भी पहनी हुई है और इसमें फर्श भी--

और इसमें ग्रिल भी नजर आ रही है और इस ग्राउंड के बीच में कूछ गोल गोल खड़ा हुआ है।

और इसमें एक दरवाजा भी है और इसमें टैल भी बिछी हुई है।

और इसके साइड में लकड़ी की एक टेबिल भी रखी है।

और दीवार पर रंग हो रहा है और इसमें एक पेंटिंग भी धरी हुई है।

एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है एक व्यक्ति साइकिल पे बैठा हुआ है और उसने मास्क लगा रखा है।

और एक यहां पर पेड़ है और इसके ऊपर आई_सी_सी बैंक का फोटो लगा हुआ है और इसके ऊपर खिड़की और जंगले भी लगे हुए हैं।